यह दृश्य हमें एक डेरी की दुकान का नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें एक कैफे का नजर आ रहा है।

पीछे कुछ फोटोस भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में हमें चारों तरफ पहाड़ पेड़ पौधे और बड़े बड़े कोकोनट ट्री लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास में बैठने के लिए चेयर और टेबल भी रखे हुए है।

यह दृश्य हमें एक मिठाई की दुकान का नजर आ रहा है।

ऊपर कुछ नमकीन भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

पास में हमें एक चारपाई पड़ी हुई नजर आ रही है।

आसपास हमें कुछ टेबल्स लखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी जिम का नजर आ रहा है।

यहां पर हमें बहुत सारी मुर्गियां दिखाई दे रही हैं।